यहाँ पे खाने के प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

और यहां पौधे भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पौधे हैं।

ह हॉल के अंदर बहोत सारे चेयर्स है।

देव हिल्स का बोर्ड है और यहां पे कु चारो मार्ग दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारे वॉयर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे वर्कर पेट्रोल डाल रहे हैं और यहां पे--

ये एक जिम है। जिम के अंदर बहोत सारे मशीनस है।

और यहां पर बड़ा सा घंटा दिखाई दे रहा है।

और यहां दूसरी साइड बहुत सारे लोग टेबल पे--

यहां पे बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

छोटे छोटे पेड़ पौधे मिट्टी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे मोबाइल कंपलेक्स है और यहां पर कपड़ों के भी कंपलेक्स है।

और यहां पे कुछ वॉल्स पेपर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

अलग-अलग शो पो कें पौधे है यहाँ पे बहोत हरियाली है।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे रंग-बिरंगी फूल दिखाई दे रहे है यहाँ पे लाल कलर की सफेद पिंक पर्पल फूल दिखाई दे रहे है।

बहोत सारे फूल पत्ते दिखाई दे रहे हैं।